चिंची की पार्किंग हो रही है और यहां पर ये कार की पार्किंग हो रही है और सामने --

यह बहुत अच्छी बिल्डिंग है यहां बालक के लिए बहुत ही सहूलत है।

यहां पर त्यौहार मनाए जाते हैं और ये जो महिलाएं हैं बैठकर एंजॉयमेंट कर रही है।

जामनी कलर हरे कलर और लाल कलर की है और भी बहौत होती हैं।

लेकर आती है और बहुत सारी किताबें लेकर जाती है यहां से किताबें ले जाकर बच्चों को--